और पहाड़ पे रास्ते भी काफी खूबसूरत दिख रहे है।

गाड़ी की खूबसूरती काफ़ी निखर के आ रही है।

और एक गाड़ी भी दिख रही है।

और स्ट्रीट लाइट भी काफी खूबसूरत लग रही है और स्ट्रीट लाइट पे टोकरी में पौधे उगाए गए हैं।

और लोग मच्छी बेचते और खरीदते हुए भी नजर आ रहे है।